यहाँ एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है | इसपर हुआ दिखाई दे रहा हा है | पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है | गेट लगा हुआ --

यहां एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसमें जलियां दिखाई दे रही है। बोर्ड टंगा हुआ दिखाई दे रहा --

यहाँ एक मस्जिद दिखाई दे रही है इसमें माइक लगी हुए दिखाई दे रहे हैं। घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे --

एर् यहाँ रोड दिखाई दे रही है कुछ लोग चलते हुए दिखाई दिख रहे हैं एक मकान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे आसमान का कलर नीला दिखाई दे रहा --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

ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका कलर सफेद एवं लाल दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बाइक का शोरूम दिखाई दे रहा है इसमें बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांच के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर पीला दिखाई दे रहा है उसमे जालियां लगी हुई दिखाई दे रही है कांच के शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।